और बड़ा सा मेनू कार्ड बना है जो भी यहां खाने की चीजें मिलती हैं और इस पोस्टर पे सभी चीजें लाइन बाय लाइन लिखी गई हैं।

और यहां अ अलमारियां जो कि लकड़ी की--

और इस खेत में बहोत ही जादा बड़े-बड़े अअ और हरे-हरे पत्तागोभी उगाए गए हैं जोकि बहोत ही खूबसूरत तरीको से उगे हैं।

और इस रोड पे एक बड़ी सी अ बस खड़ी है।

इस हाल में एक लाल कलर की कार रखी हुई है।